गेट के पास एक दो पेड़ हैं।

गाड़ी का बोनट खुला हुआ है।

इस फोटो में एक रास्ता है।

और बीच में एक इंसान खरा हुआ है। जिसका मुंह ब्लर किया गया है।

इस तस्वीर में एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है।

इस तस्वीर में एक फ्लाई ओवर दिखाई दे रहा है।

एक बाइक पर एक फैमिली जा रहा है।

गेट पर भगवानों की प्रतिमा बनी हुई है।

नदी के उपर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है।

कुछ ही दूर पर कुछ पेड़ हैं और एक घर जैसा कुछ है।

इस मस्जिद का रंग सफेद है।

इस तस्वीर में ये एक गेठ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें ये एक साइकिल गोडाउन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग है।

सामने की तरफ एक पेड़ है।

उन लोगों के पीछे कुछ बैनर्स है।

पहाड़ो के बीच से बहती हुई नदी आ रही है।

डाइनिंग के ऊपर एक मेनू कार्ड रखा हुआ है।

इस तस्वीर पर एक ट्रक है।

ओ लोग अपने सर पर बरी बरी बोरियां उठा कर ट्रक पर रख रहे हैं।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

इस रेस्टोरेंट का नाम है उत्तरन फैमिली रेस्टोरेंट ।

ये पार्क वर्तमान एकदम खाली है।

साइड में एक रोड है वहां पर बस दिखाई दे रहा है।

खिड़की पर कर्टेंस लगे हैं और खिड़की खुली हुई है।

और एक आदमी पीले रंग की शर्ट पहने हुए हैं।

उनके चारों ओर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भरे पड़े हैं।